फूलों की माला दिख रही है एक्सप्रेस गोल्ड लोन लिखा दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा भी दिख रहा है।

एक साइड एक लड़की का चित्र बना है वहा अमेरिकन इनसाइड आउट लिखा है।

कुछ औरते सब्जी बेचते हुए दिख रही है एक औरत मास्क लगा कर आती हुई दिख रही है।

इस चित्र मे एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने लाल कलर का लेहँगा --

ब्रिज दिखाई दे रहा है।

खिड़कियाँ दिखाई दे रही है कबर्ड दिखाई दे रहा हैं।

चित्र में कुछ दुकाने दिखाई रही है जिसपे मासिदा एवं एन.जे.बी पार्लर लिखा दिख रहा है।

गार्डन मे दिखाई गयी स्लाइडे है।

कुछ वृकछ छोटे भी है।

जोकि अपने पंखो को पूर्ण तराका से फैला के रखा है।